छोटे छोटे दरवाजे हैं जिसमे बुक या पेपर रखते हैं ।

बहुत ही बेहतरीन डिजाइन दिया गया है।

और यहाँ पे बोहोत सारे आदमी इधर उधर से दुरो-दुरो से आते है देखने के लिए --

मॉल दिख रहा है जिसका नाम भी टू है |

एस.के. ऑटो है|

जो की एक मोल्वोस मोलवी साहिब हैं|

खेलने के लिए बहुत अच्छा ये फील्ड होगा --